ये एक एयर सोल्यूशन की दुकान है | जिसमे तीन कुर्सिया है |जो काले रंग की है| एक आदमी ओल्ड आदमी खड़ा हुआ है।

इसकी शर्ट ब्लू कलर की है और दीवाले भी ब्लू कल अ ग्रीन कलर की है एक पंखा है काला कलर का --

यहाँ एक बहुत बड़ा चर्च है जिसमे एक महराज है उसने सब पीले कलर के चादर ओढ़ राखी है रेड लाल कलर का एक गमछा है।

एक आदमी है जहां पर दो सालकिल है रेड कलर की सालकिल है काले कलर के शटी है कला कलर का पेन्ट है।

लड़कियों ने कुछ पीले कलर की पहेन राखी है कपड़े लड़कों ने कुछ पीले ग्रीन और येलो सफेद कलर की टिशर्ट पहन राखी है।